इमेज में एक बकरी दिखाई दे रही है जो कि घास खा रही है बोहोत सारी घास दिखाई दे रही हैं पत्ते दिखाई दे रहे हैं एक झाड़ दिखाई दे रही है।

आयल दिखाई दे रही है स्विच बोर्ड दिखाई दे ररही हैपानी दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है।